एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहां पर बहुत सारे विंडोस है विंडोस सारी ग्लास कलर की विंडोस है और सामने एक ट्री बना हुआ है वॉल पे--

और पत्थर भी है और सामने माउंटेंस है और एक ग्राउंड में पी पिच भी बनी हुई है जिसमें बहोत सारे ट्री हैं।

रैक के अंदर बहोत सारा सामान पड़ा है फ्लोर का कलर फ्लोर बहोत प्यारी फ्लोर में शाइनिंग --

पानी बहुत सारा पानी है उसके अंदर ऊपर बहुत ग्रीन कलर की ग्रास है।

ट्वेन्टी फिफ्टीन से ट्वेन्टी पीसेस है और ब्लू कलर बहोत प्यारी है।

और एक चेयर सामने पड़ी है जिस पे बॉस बैठता है।

ये क्रैकर्स के डिप बॉक्स का कलर किसी का येलो है किसी का ब्राउन है किसी का रेड है.

सबने कैसा लग रहा है किसी ने ग्लास का पाइरामिड बनाया हुआ है और ग्लास की क्वांटिटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एठ नाइन टेन एलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन --

और शॉप की एम_बी_एस बहोत अच्छा है उसके अंदर एक फ्रिज है फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक पड़ी है।

कोल्ड ड्रिंक्स भी बहोत सारी पड़ी है फ्रिज इसके अंदर और इतना सारा सामान है उसके--

एक बहोत अच्छा घर है घर का करर --